एक रूम में बाँधा हुआ है बहुत मस्त लग रहा --

यहाँ टोपी पहना है शेरवानी पहना है लड़की लेहंगा पहनी हुई है ।

भगवान का पूजा हुआ हैं।

बहुत सारे आदमी पूजा करने के आ --

बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है।

लगा के सजाया गया है दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है बैलून है गुलाबी कलर के हॉर्स बहुत सुंदर से बनाए गए है |

ये बुहत मस्त लग रहा है देखने मे | इसमे बुहत सारे आदमी रहते होंगे |